और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर की है।

यहां हमें रेलवे स्टेशन दिखाई दे रही है जो ब्लैक और ग्रे कलर की है इसमें एलबेस्ट र लगे हुए हैं एलवेस्टर का कलर वाइट है ब्लू है --

यहां हमें एक बड़ी सी ट्रेन दिखाई दे रही है जो पीला कलर का है और इसके खिड़किया का कलर मरून कलर है।

कपड़े का कलर है ब्लू है और वाइट है और हाथ में एक मशीन लिया हुआ है जो ब्लैक कलर का है और इस रूम का कलर है क्रीम है।

यहां हमें फूल की गार्डन दिखाई दे रही है जिसमें ढेर सारे रंग बिरंग के फूल लगे हुए हैं और कुछ-कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

फूल का कलर है वाइट है रेड है ऑरेंज है पीला है और पिंक कलर की है और रानी कलर है।

यहां हमें ग्रे और ब्लू कलर की बड़ी सी पेट्रोल पंप दिखाई दे रही है इसके खंबे के कलर है वाइट है ब्लू है और ऑरेंज है।

और इसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो रंग बिरंग के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां हमें दो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो वाइट और--

रेड कलर के पिंक है ऑरेंज है और ग्रीन कलर के हैं इसमें ढेर सारे फूल के गमले हैं जो वाइट है ग्रीन है ऑरेन --